है जो इसकी पर्पल कलर कि शर्ट पेहने हुए है बहुत सारी कार्स दिखाई दे रही है बाइक्स दिखाई दे रही है बहुत सारे कांच दिखाई मशीन दिखाई दे रही है।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

उस साइड बसेज दिखाई दे रही हैं जो रेड वा येलो व्हाइट और ब्लू दिखाई दे रही हैं।

लोग दिखाई दे रहे हैं यहां पे बहुत सारे पेड़र्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहुत सारे फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं यहाँ पर दो बैट दिखाई दे रहें हैं तीन चार बॉल दिखाई दे रही है यहाँ पर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है।